और एक सोफा भी रखा हुआ है और पीछे मशीन भी रखी हुई है और इसमें गद्दे भी पड़े हुए है।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

और सामने बहुत पेड़ लगे हुए हैं।

और सामने एक बहुत बड़ा मकान भी है।

यह एक स्कूल है जिसमें बहोत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।

कुछ कपड़े रैक में रखे हुए हैं और कुछ बाहर।

और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।